आज शायद इसकी ओपनिंग है यहां पे ढेर सारा बैलून लगाया गया है और इसका नाम शायद ब्लैकी करके है और दो तीन पेड़ है।

ये एक गैरेज का फोटो है यहां आदमी गाड़ी को ठीक कर रहा है गाड़ी बहुत ज्यादा टूटी हुई हैं भी नहीं है व्हाइट कलर का उसका कलर भी ठीक कर रहा है।

कुछ बड़े - बड़े गोल आकार के चीज है उसके पीछे मे पिंक कलर का कपड़ा लगा हुआ है आगे में एक आदमी फोटो खींचा रहा--

जिसपे ये एक मुण्डी बना हुआ है मुंदडी पे यीशु मसीह का फोटो बना हुआ है और ये लोग कुछ गा रहे हैकुछ पढ़ रहे और मतलब उसी को दोहरा रहे है।

कि ये एक हॉस्पिटल है जहां पर यह कुछ आदमी अपना नाम लिखा रहे हैं और यहां बहुत कोई वेट कर रही है दोगो आंटी बैठी हुई है वेट कर रही है।

सब माक्स लगाके हैं और एक आदमी बात कर रहा है।

यह भी स्कूल का है कंपटीशन का है यहां पे सिर्फ लड़के है और ढेर सारे ब्रेंच लगे हुए है जिसमें कंपटीशन हो रहा है।

यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छै बोटर बोटिंग बोट है सब में दो-दो आदमी है।

एक शो का फोटो है ये एक शायद डांसिंग शो हो रहा है यहाँ पे--

आगे में एक पुतला रखा है जिसमें एगो जीन्स पैंट पेहना के रखा हुआ है।

ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसके आगे एक आदमी बैठा हुआ है जिसके ऊपर में और वहां से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है पूरा शहर दिख रहा है।

बहुत सारे घर दिख रहे है आकाश भी एकदम सुन्दर सफ़ेद--

ये कोई योगा क्लास है जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी का कोई एक तरह का ये लोग ये कर रही है।

ये एक मेडिकल शॉप है जहाँ पे ढेर सारे दवाई है।

एक बस जा रही है और यहा पे ढ़ेर सारी भीड़ है जो बस में जा-- बैठने के लिए है और बस ड्राइवर शायद गाड़ी रोकने वाला है ।

ये कोई नदी का फोटो है जहाँ पे एक पत्थर लगा हुआ है।

मतलब उसका टायर निकल दिया है और उसका आगे वाला खोल के ठीक कर रहा है।

ये भी एक किराना दुकान है यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं है और यहां चार ही लोग है और यहां पे ढेर-सारे बोरे रखे हुए है एक घी का बैनर लगा हुआ है ऊपर में----

ये एक मैच का मैदान है जहा पे ढेर सारे लोग बैठे हुए है और रात हो रहा है और बहुत अच्छा लाइट जला हुआ है।

ये एक बड़ा-सा मकान है जो दो कलर में किया हुआ है रंग ---